चारों साइड पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं फर्श में सफेद पट्टी दिख रही है किनारे पीली पट्टी दिख रही है काली रोड दिख रही --